स्टेज के ऊपर काफी सारे चेयर्स भी मौजूद हैं और बहुत सारी लड़कियां भी दिख रही हैं।

चित्र मे एक बैनर है जहां बेकर्स स्पेशल रिपोज़ लिखा हुआ है।

एक एक्समस ट्री भी मौजूद है।

साइड में एक वाइट कलर की बड़ी बिल्डिंग भी है।

बिजली के खंभे भी दिख रहे है जहां पे वायरिंग किया हुआ है ।

नदी भी दिख रही है नदी के बीचों बीच कुछ द्वीप जैसा भी नजर आ रहा है।

त्र में एक बड़ा सा हॉल दिख रहा है जिसमें कुछ अलमारियां भी है।

कुछ छोटे पोस्टर भी हैं जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है।

एक बड़ी वाल घड़ी भी मौजूद है।

वहां कुछ नारियल के पेड़ भी मौजूद है और विभिन्न प्रकार के हरे हरे पेड़ भी।

वो बड़े बड़े बिजली के खंभे भी दिख रहे हैं।

काफी सारे छोटे पोस्टर्स लगे हुए हैं जो की टंगे हुए हैं।

कई सारी छोटी लाइट भी दिख रही है जो कि जल रहा है।

चित्र में कई सारे पौधे दिख रहे हैं यहां पे पीले रंग के फूल है।

कई सारे लाइट है जोकि चमक रहे हैं।

एक काले रंग का मूर्ति भी है जहां पे शहीद स्मृति लिखा हुआ है।

चित्र में एक रास्ता दिख रहा है और एक फ्लाईओवर भी नजर आ रही है।

और तेज धूप की रोशनी भी दिख रही है।

सीढ़ी भी मौजूद है जिसके रेलिंग डिजाइनिंग हैं।

एक डस्टबिन भी दिख रही है हरे रंग की--

एक तालाब भी नजर आ रहा है।

एक आदमी भी है जोकि गार्डेनिंग कर रहा है।

काफी सारे लोग भी मौजूद है।

दीवार पे एक सफेद रंग की बड़ी खड़ी और एक पंखा भी मौजूद है।

जी_पे का छोटा सा लोगो भी मौजूद है।

एक पंखा भी नजर आ रहा है।

ये आदमी बैठे हुए हैं।

खाली रस्ता दिख रहा है जिसके बीचों बीच डिवाइड भी है।

एक टू व्हीलर भी नजर आ रहा है।

बिल्डिंग में एक बड़ा सा पोस्टर है जहां यूनियन बैंक लिखा हुआ है।

बहुत सारे पेड़ और पौधे भी मौजूद है और छोटे घांस भी दिख रहे हैं।

एक बड़ा सा स्ट्रीट लाइट भी मौजूद है।

रस्ता भी खाली लग रहा है।

एक पीले रंग का बिल्डिंग भी मौजूद है।

चित्र में एक ब्रिज भी मौजूद है सीमेंटेड वाला जिसका डिजाइन ब्लैक और व्हाइट से किया गया है।

हमें एक नदी भी दिख रही है जो कि ब्रिज के नीचे है।

एक औरत भी दिख रही है।

काफी सारे बरे पैर भी मौजूद है।

दो बिजली के खंभे दिख रहे हैं जिसमें वायरिंग की गई है।

चित्र में काफी सारे पेड़ पौधे देख रहे हैं और दो बिजली के बड़े खंभे भी नजर आ रहे हैं ।

काफी सारी परछाइयां भी है।

दो बड़े पहाड़ भी नजर आ रहे है।

उसपे में दो आदमी दिख रहे हैं जिनमें एक ने ब्लैक कलर की टी शर्ट और एक ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

में चार बड़े स्पीकर्स दिख रहे हैं जिसका डिजाइन काफी अनोखा है।

एक रास्ता भी दिख रहा है।

बिजली का बड़ा खंबा भी दिख रहा है।

चित्र में एक बड़ी सफेद रंग की इमारत दिख रही है जो इमारत काफी यूनिक तरह से डिजाइन की गई है।

चिड़िया के चोंच का रंग ऑरेंज है।

चिड़िया की परछाई नदी में दिख रही है।

चित्र में एक रूम दिख रही है जिसका कलर व्हाइट कलर है और नीचे के फ्लोर का डिजाइन ऑरेंज और ब्राउन पे है।

चित्र में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।

चार पंखे भी दिख रहे हैं।

पिक्चर में डिजाइनिंग चेयर्स और टेबल भी मौजूद है।

एक नदी भी दिख रही है।